अच्छा बीस ऑर्डर कर के और वो सभी पार्टी इन्जॉय कर रहे हैं और स्टूडेंट भी काफी सुंदर है इधर देखिए थोड़ा सा ग्रीनरी है और डेकोरेसन रूम का काफी सुंदर है --

तो दोस्त एक माला है जो माला आप जैसा कि जानते हैं कि य भगवान के ऊपर चढ़ाने में काम आती है किसी भी देवी देवता के ऊपर हम लोग चढ़ा सकते हैं और --

चार बंदे हैं जो सभी पूजा के मार्केटिंग के लिए फूल माला खरीद रहे हैं तो कुछ हैंकी वगैरह ले रहे हैं।

ब्यूटी की साइड से सारे रिलेटेड समान है यहां पे क्रीम वगैरा भी है और यहां ग्रीन टी वगैरा भी लड़की के पेहनने के लिए बैंगल्स वगैरा भी है।

हां तो मेरे दोस्त देख सकते हो कि यह यहां बच्चे ड्राइंग बना रहे और यह मदरसे का सीन है जहां पे--

और यह काफी सुंदर जगह है जहाँ पर म् मिस जो है बच्चों को सिखा रही है कि कैसे रोडिंग करना --

पतलिया मोहम्मद गुप्ता बिल्डिंग मटेरियल है अंबूजा सीमेंट यहाँ पे गाड़ी भी लगी हुई है ग्लैमर --

यहाँ पे आयकर सेवा केंद्र है आप इनकम टैक्स ऑफिसर यहाँ पे जाते हैं और ड्यूटी करते कर्मचारी से लेकर --

और यह ओपन ग्राउंड है जिसमें लग रहा है कि सारे कॉलोनी के बच्चे यहां पे क्रिकेट खेलते होंगे और साइड में देखिए।

काउंटर मैनेजर से बात से बात चीत कर रहें हैं ऐसा देखने से लग रहा है कि ये होटल है और यहां पे काफी सारे--

बिल्डिंग तो देखने से लग रहा है काफी पुराना है बगल में कचरा का कूड़ादान भी है उधर कचड़ा गाड़ी भी लगा हुआ है और ये कालू भाई है।

और देखिए नदी कें उसका --

दोस्त देख सकते है यह जो है देखने से लग रहा है कि कोई पार्क है यहां पे कितनी अच्छी सी प्लांट को ये मतलब उसके रूट्स को कितने अच्छे से--